और कांच का जैसा मुझे कुछ दिख रहा है बहोत दूर है।

और कुछ लोग बाहर घूम रहें हैं कुछ लोग अंदर घूम रहें हैं।

और कुछ पेड़ हैं जो बहोत बड़े बड़े हैं।

और एक अंकल अंदर जा रहें हैं और एक अंकल बाहर आ रहें हैं और बहोत सारे कंकड़ पत्थर फेके हुए हैं नीचे।

और लाइट्स से पूरा दुकान झगमगा रहा है।

और वो पान लगवा रहे हैं अपने लिए बहुत सुंदर सा माहौल है।

और बहुत खूबसूरत सा नजारा है लाइट लगी हुई हैं लाइट जल रही हैं तो गुड़ियां और अच्छी लगती हैं।

और एक मैदान है। मैदान में बहोत सारा कूड़ा करकट है। एक पेड़ गिरा हुआ है। वो सूखा हुआ है।

और चारों तरफ कुछ दिख रहा है मुझे।

एक स्टेशन दिख रहा हैं जिसपे एक गाड़ी खड़ी हुईं हैं।

और एक व्हाइट कलर का टेबल हैं और अच्छा--

और कुछ इनो वगैराह कुछ रखा हुआ है। विक्स की पैकेट रखी हुई है और दवा डिब्बा में रखा हुआ हैं दिख रहा--

इक लाइब्रेरी है लाइब्रेरी मे बहुत सारी बुक्स रखी हुई है।

दीवाल है दीवाल व्हाइट कलर से पेंट किया गया है और एक भारत माता का चित्र है।

और अम उसके बगल में एक बहोत बड़ा मेला लगा हुआ है।

और उम्म्म क्या कहते हैं आस पास में खेत बहोत सारे हैं।

एक रेलवे स्टेशन है जो भलवारा नाम से है।

जिसमें कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं कोयला भरा हुआ हैं।

और जो ग्रीन कलर का है और ब्लू कलर का है।